दो एक है और एक आदमी बाहर जा रहा है।

और यहां पर एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ है।

पंखे भी लगाए गए हैं हवा के लिए पंखों का कलर वाइट है और यहां पर दो तीन आदमी--

यहां प गोलगप्पे टिक्की दही बड़े चाट--

अह पर्दे लगाए गए हैं और यहां पर बैठने के लिए चेयर और मेज लगाए गई है और यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक मैदान की तस्वीर है जहां पर बहोत सारे लड़के--

यहां पे बहुत सारी व्हाइट कलर की बिल्डिंगे बनी हुई है और भारी कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है।

और यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं यहां पे कूड़ा उठाने वाली मशी मशीन भी है।

यहां पर एक लाल और वाइट कलर की बस खड़ी हुई है जिसके ऊपर राधे राधे लिखा गया है।

नए शॉप की तस्वीर है यहां पर बाल काटे जाते हैं यहां पर कुछ--

पत्ते और पेड़ पौधे उग रहे हैं और यहां पर बहोत सारे पत्थर गिरे हुए हैं।

जंगल में जा रहे हैं अंक ने बैग टांगा हुआ है यहां पर बहोत सारे पत्ते भी हैं।